यह मादी या कोई देवता वगैरा है जो पूजा जा रहे हैं। जेसे अपने कोई देवता वगैरा पूजते है कोई वगेरा पूजते है मतलब कुछ ऐसा फोटो है।

चो कुछ लगा हुआ है बोर्ड टाइप जिसमे ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है बड़े-बड़े गेट है शायद और वो फ़ोन में देखे के फोटो क्लिक कर रहा है अपने आने से।

घर जालीदार है जेसे अ रे-रेड कलर का पेंट हो रहा है रेड कलर का दिख रहा है गोल्डन वाइट कलर का दिख रहा है। जालीदार ये गेट है भी हैं निचे --

जिम है जो कि कुछ तीन लड़के खड़े हैं जो फोटो क्लिक कर रहे हैं। पीछे एक बैनर लगा हुआ है शायद उसपे कुछ लिखा हुआ है।

माता की तरह पूजा हो रही है काफी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। इखे लगी हुइ हैं। पन्नी की झालो से सजा हुआ है।

उसमें ओ चारो तरफ पंखे चल रहे हैं। लाइटें जली हुई है। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी है और छोटे-छोटे कागजों पे कोई नोटिस बोर्ड लगाया गया है लिखा हुआ है कुछ --

इ शायद शॉप है या लाइब्रेरी है शॉप ही है। जिसमें काफी स अ किताबे रखी हुई हैं लगी हुई हैं रैको में लगी हुई हैं।

ये पीछे का ज-स चक्कू दिख रहा है। वह आईने मे देख के फोटो खीच रहा है अपना और काफी बड़ा है शायद ये --

गेट है जो शायद महजिद का है जैसे कि यह कोई मदरसी वगैरा का गेट है। जिसपे ग्रीन कलर की पन्नी से झालर लगी हुई हैं।

बच्चे हैं जेन्स हैंसभी खड़ें है आसपास काफी शायद घर है यहाँ पर आसपास घर है वाइट कलर का पेंट हो रहा है--

मैरिज होम है। मैरेज होम का गेट है डेको डेकोरेशन काफी अच्छी हुई है पिंक कलर की लाइटें लगी हुई हैं झालरें लगी हुई हैं।

बड़े-बड़े कनस्तर यहां पे रखे हैं। एक आदमी पास से गुजर रहा है। एक लड़का है जो कि फोटो क्लिक कर रहा है और यहाँ पे उम्म उम्म कनस्तरों को उम्म लगा रखा है लाइन से --

है जो कि खड़ी हुई है जिन्होंने ऐसे ही सिंदूर टाइप लगा रखा है। नाक से माथे तक जैसे तीज माता जी से पूजा करती है वैसे ही वो कर रही हैं।

पुराना सा अस्पताल है ये गाड़ी खड़ी हुई है। अस्पताल का गेट काफी बड़ा अ बड़ा है कुछ लोग उ-उधर से आ रहे हैं।

ये एक यहां से मेला लग रहा है नुमाइस लग रही है मेला लग रहा है जिसमें एक लड़की बेठी हुई है जैसे जल परी है कितनी सारी जल परी हैं ऊपर नीचे पहाड़ हैं।